इस फोटो में बहोत सारे टमाटर दिख रहे हैं।

नीचे बहोत सारी बाइक की पार्क है।

नीचे मधुर मिलन का बोर्ड लगा है।

यहां पर एक आदमी अंदर बैठा दिख रहा है जहां पर पंखा एक दिख रहा है।

यहां फर्श पर ब्लैक कलर की टाइलिंग है।

यहां पर दो पाथ भी दिख रहे हैं।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

इस फोटो में सामने एक बोर्ड लगा है जिस पर हुसैनगंज लिखा हुआ है।

दीवाल पर एक वाइट कलर का बोर्ड एक और बोर्ड लगा है जिस पर एरो बना हुआ है।

अंदर भी कुछ लोग खड़े हैं एक बोर्ड लिखा हुआ है जिस पर अलग लैंग्वेज लगी है सामने एक तराजू रखा है।

यहां पर कुछ लोग भी हैं एक औरत चाय पी रही है।

ऊपर दीवाल पर फैन लगे हुए हैं येलो कलर के लाइट्स लगी हुई हैं।

टूटे फूटे घर नजर आ रहे हैं दूर पेड़ भी दिख रहे हैं।

यहां पर बहोत बड़ी जंजीरें लगी हुई है।

यहां पर बहोत सारे गमले लगे हुए हैं।

दूर बिजली के खंभे लगे हुए हैं और पेड़ पौधे भी लगे हैं।

पीछे का कलर येलो व्हाइट और रेड है।

इस फोटो में एक बहुत बड़ा सा बोर्ड दिख रहा है जो को आप्टेक्स लिखा हुआ है उस पर एक बटरफ्लाई बनी है।

यह फोटो किसी कपड़े की शॉप लग रही है।

पीछे कुर्सियां पड़ी है एक फायर फायर गैस भी लगी है।

और खिड़कियों पर बहोत सारा सामान रखा है जो बाहर से दिख रहा है।

इस फोटो में एक एयरपोर्ट दिख रहा है।

इस फोटो में एक कार दिख रही है वाइट कलर की।

दीवाल पर वाइड और रेड कलर का पेंट है।

यहां पर लकड़ी की पतीलीयां दिख रही हैं।

रखा हुआ है कटोरी में कुछ सामान रखा है एक थाली में पन्नी रखी है।

ये किसी बालकनी मे बना हुआ गार्डन की फोटो है।

यहां पर बहोत सारे गमले रखे हुए हैं।

एक लोहे का खंभा दिख रहा है बोर्ड भी लगा दिख रहा है दूर।

यहां पर एक औरत डांस करते हुए दिख रही है।

यहां पर फूलों की सजावट हुई है।

सामने लिखा है तकनीक और शिक्षा से विकास।

यहां पर एक टेबल रखी हुई है जिस पर टिशु और भी कुछ सामान रखा हुआ है।

इस फोटो में एक रिसेप्शन एरिया लग रहा है।

और ये यहां की रोड एकदम मिट्टी वाली है।

यहां पर बेड पर गोल्डेन और वाइट कलर की तकिया रखी है एक रेड कलर का चादर पड़ी है।

ये फोटो किसी कार शोरूम के बाहर की फोटो लग रही है।